यहाँ देखो ये स्टेशन्स के होते हैं फोटो जहाँ बेचारा अकेला आदमी बैठा हुआ है वेट कर रहा है और ऐसी फीलिंग्स ना आती है जब कई बार देखो वो डोगी कितना प्यारा लग रहा है।